दो कुर्सी और दो टेबल दिखाई दे रहा है।

और उस खिड़की में ब्लू कलर के पर्दा है।

यहां पर हमें तीन तरह के मकान दिखाई दे रहा है।

दो आदमी बाइक से जाते हुए दिख रहा है।

ओर उस तक उठने के लिए एक सीढ़ी दी गई है जिस के लाल कलर रंग है।

कुछ मटकों में भी लगाया हुआ है।

इसके दरवाजे शीशे से बनाया हुआ है।

और एक कुर्सी दिखाई दे रहा है जिसका रंग काला है।